इसमें लिखा हुआ रोहन चाय सेंटर ।

नीचे ब्लैक और रेड कलर का कुछ वस्तु दिख रहा है।

एक कीबोर्ड भी है एक माउस भी है एक प्रिंटेर मसीन भी है।

कलर के पर्दे भी बहुत सारे।

ये एक स्टेज का दृश्य है जो की वेडिंग स्टेज है।

और यहाँ ग्रीन और ब्लू कलर का मैट भी बिछा हुआ है।

इसका नाम राजकीय कृत प्लस टू उच्च विद्यालय रमना है।

यहां ब्लैक कलर के कई सारे चेयर भी लगा हुआ है।

ये एक झील का दृश्य है।

पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा टावर है।

ये एक ग्राउंड का दृश्य है।

बाहर भी है ब्लैक कलर का।

यहां साइकिल भी लगा हुआ है।

छे लोग बैठे हुए हैं।

ये एक बिल्डिंग का दृश्य है।

जिस पोस्टर में लिखा हुआ अमन सिंगार एन जनरल स्टोर ।

ड्रिल मशीन का काफी बॉक्स रखा हुआ है।

ये एक एक मूर्ति का दृश्य है।

हाथ में बाशुरी है।

यह एक शॉप का दृश्य है और बैलून से डेकोरेट किया हुआ है।

ये ए_सी भी लगा हुआ है।

और अलमुनियम का दरवाजा भी है।

घड़ी टंगी हुई है और बेल्ट भी टंगा हुआ है।

यहां पर एक सिलेंडर भी रखा हुआ है।

एक लोहे से बनी हुई यहां पर कुछ वस्तु भी रखे हुए हैं।

कुछ खूबसूरत है और ये हमारे काम भी आता है।

एक लोहा से बने हुए पाइप दिख रहा है।

इस यहां पर शिमला रखा हुआ दिख रहा है।

ऊपर में लाइटें बहुत सारी है नीचे टाइल्स लगी हुई है।

पंखे भी लगे हुए है।

ये एक मैरिज होटल का दृश्य है।

पिंक कलर का और रेड कलर का फूल से सजाई गई--